मॉल बना हुआ है मॉल के आजू बाजू लाइटिंग लगी हुई है ब्राउन कलर की दिवाले हैं मॉल की।

में बताये गये पेड़ है पेड़ के नीचे अ लड़के लड़की अंटी लोग है दो तीन लोग नहा रहे हैं नदी में डुबकी लगा रहे हैं | दूसरी तरफ उनके दिवार पे वाइट कलर का पेंट है।

यहाँ पे बहुत सारे पेड़ बने हुए हैं | हरे कलर के पेड़ है उनकी पत्तियां हरे कलर की है और कही कही फूल भी है ।

यह खाली सड़क पड़ी हुई है ग्रे कलर की सड़क है उसके एक तरफ बाउंड्री बोल बनी हुई है हरा कलर का पेंट है उसके दिवाल के बीच मे साइड --

ये गेट को बहुत अच्छे से सजाया है गोल्डन कलर का गेट है उसमे फूल लगे है।

जैकेट पहनी है ग्रे कलर की शर्ट पहनी है टी-शर्ट सिर्फ ऑरेंज कलर जैकेट पहनी है अंकल ने --

एक लाल कलम कलर का एक स्तंभ बना हुआ है उसके उप्पर ब्राओ येल्ल गोल्डन कलर की छोटी सी चोटी बनी हुई है स्तंभ के पहले एक गेट लगा हुआ है लोहे का गेट है उस पर रॉड लगी हुई है बस साइड में सीमेंट के दो पिलर बने हुए हैं उसके आजू-बाजू पौधे बने हुए हैं।

यह म्यूजियम में काँच के केस लगे हुए हैं दो-तीन केस बने हैं उसके अंदर एक शेल्फ बने हुए हैं बहुत सारे शेल्फ बने हैं छोटे-छोटे उसके ऊपर एक-एक एंटीक पीस शो-पिस रखे हुए हैं।